जहां पे दोनों तरफ खम्बे लगे हुए हैं खम्बे काले रंग के हैं और एक रेलिंग भी है जो की स्टील की है।

सामने की रोड दिख रही है जो स्लेटी रंग की है और हरे रंग की है।

जिसमें एकनाथ लिखा हुआ है और उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है जिसके अंदर कपड़ा टंगे हुए है।

यहां पर एक पर्दा पड़ा है जो पीले रंग का यहां की दीवारें जो है वो सफेद और सलेटी रग की है।

और थोड़ी जगह मिट्टी भी पड़ी हुई है एक आदमी का हाथ दिख रहा है।

और इसकी डिजाइन भूरे रंग की है और यहां पर प्लस का निशान हैं।

जो की बॉर्डर पर लगा हुआ है जिसके पास एक लडका खड़ा हुआ है जिसके पिछे कमरा बना हुआ है जिसका कमरा --

जो सर झुकाए हुए है जिसके सामने एक दीवार है जो कि बुरे रंग की है जहां पर एक पेड़ लगा हुआ है जो काफी फैला हुआ --

धनबाद का है ये और जिसके सामने बना हुआ है जो कि लोहे की ग्रिल्स है।

उस लड़के ने चश्मा लगा रखा है और नीले रंग का बैग टांग रखा है जिसके पास में एक पौधे है थोड़ी सी घास भी उगी हुई है।

यहां पर एक दरियाई घोड़ा खड़ा हुआ है जो भूरे रंग का है जिसके पास में काई सारे पेड़ भी लगे हुए हैं पेड़ ऊंचे ऊंचा भी है।

जो भूरे रंग की है जिस पे एक नीले रंग की डिब्बे रखी हुई हैं एक आदमी खड़ा हुआ है जिसके सामने कई सारे बैनर लगे हुए हैं जिसके डिपार्टमेंट आफ पोस्ट लिखा हुआ है आधार ।

इसके पीछे कांच का एक गेट लगा हुआ हैजिसके ऊपर से कॉन्टैक्ट और दो डाईलर बने हुए है नंबर लिखा हुआ है।

और वो सफेद रंग की दीवार पर है जिस पे पुरे डिजाइन बनी और सामने तन पादरी करेगा जिन्होंने पीले और लाल रंग का चोंगा पर रखा है।

जिनके पीछे एक बोर्ड लगा है जो नीले रंग का है जहां पर प्रजापति बुक सेंटर लिखा हुआ है जो कि किताब की दुकान है।